एगो कपड़ा के दुकान है जेकरा ऊपर मे पंखा लगल है छे गो।

एगो गाड़ी लगल हई एगो टेंपू लगल हई इने घर हई हरियर के ऊपर से रंगल हई पियर के रंगल हई देवाल है इने इ रोड हई उने पोल ख --

ओन्हे अन्हार में बगल में नीम के पेड़ है। आ ऊपर से पियर ह।

जैसे की तू सब देख रहल हुआ ई बड़का जो घर बनायल बा बिल्डिंग ओकरा बगल में तनी-तनी को हरियर-हरियर पेड़ हाई ऊपर आसमान में लागेले हव|

ई एगो पोखड़ी के फोटो हई जेमे पानी एकदम है एक बाउंड्री कइल हइ सिक्कड़ से बाउंड्री घेरले हइ औ लाल के घर हई आगे एकदम बढ़ियाँ सुहदार बनायल--

जे तू सब देख रहल ह बड़ा सुंदर पिक्चर --

बगल में खिड़की सामने शीशा लगल हेय लोहा के गेट हेय एने एगो लाठी भाड़ा पे अइले खंभा बड़का गो।